वो हाथ में लिए हुए है और लाइटे भी जल रही है ये एक जिम टाइप की दिखाई --

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और घना जंगल भी दिखाई दे रहा है थोड़ी-थोड़ी धूप भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक झरना टाइप का दिखाई दे रहा है जिस मे बहुत सारा पानी बह रहा है और यहाँ पे चटाने भी दिखाई दे रही है नदी मे एक व्यक्ति नहाता हुआ दिख रहा है ऐसा लग रहा है वो पानी मे नहा रहा है।